यह एक गांव की फोटो है बहोत सारे लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत बड़ा सा यह बगीचा है पेड़ पूरे सुंदर लगे हुए है नीचे घास भी बहोत ज्यादा लगी हुई है।

यह एक नर्सरी हैं नर्सरी में बहोत सारे पौधे रखे हुएं हैं।

यह एक कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट की दुकान है। बहोत सारे प्रोडक्ट --

यह एक सनग्लासेस की दुकान है।

पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है।

जो है एक कॉलेज की फोटो है।

नीले रंग के पर्दे भी लगे हैं।

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं।

और घर बहुत साफ सुथरा दिख रहा है।

कैफे के बाहर बहुत ही सुंदर गेट लगा हुआ है। जिसका रंग हरा है।

और मैट भी बिछे हुए हैं देखने में सब कुछ बहुत ज्यादा सुंदर और साफ सुथरा लग रहा है।

यह एक रेलवे ट्रैक की फोटो है।

उसके ऊपर एक तौलिया भी रखा हुआ है जिसका रंग लाल है।

पानी का रंग बहुत ज्यादा साफ है।

बड़ी सारि स्कूल की बिल्डिंग भी है।

और उसके अंदर बहोत ही ज्यादा पानी भी रखा हुआ है।